लंबा चौड़ा ऊपर से काच के लगे हुए है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने मे नीचे कुछ फर्श और ब्लैक कलर की लाइने खिचची हुई यहाँ पर कई सारे--

यह एक सन स्टार होटल है। जहा पर एक पोस्टर लगा हुआ है ब्लॅक ब बने हुए है और इसमे लिखा हुआ है होटल सन स्टार और स्टार बना हुआ--

ये एक मंदिर है ये बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर रंग बिरंगे खंबे बने हुए है ये बाहर की साइड कुछ सिडिया चढ़ी हुई है और एक स्कूटी भी खड़ी हुई है यहाँ पर एक पेड़ है।

याहा पर कई सारे खंबे भी लगे हुए हरी हरी लगी हुई है कुछ बड़े पेड़ लगे जो की नारियल के है और कुछ छोटे भी लगे हुए है।

यह एक तिब्बती शरणार्थी स्वेटर मार्केट है यहाँ पर कई सारे स्वेटर मिलती है वो बहार के साथ ऊपर कुछ तारे बंधे हुए है यहाँपर पोस्टर लगा हुआ--